यहाँ पे एक लड़का छोटा सा और एक औरत खड़ी है हाथ जोड़े हुए हैं यहाँ पे कर्टन दिख रही है घड़ी है।

दो फोर व्हीलर रुकी हुई है या गार्डन की जैसी घास है।

जेसी भी रुका हुआ है और यहाँ पे पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए है।

एक बड़ा स्टैचू है दो छोटे स्टैचू है उसके पीछे के साइड पे गैलरी लगे हुए हैं पेड़ है।

और ब्लैक का कलर भी है इसमें वाइट है ऑरेंज है।

सारे स्विच बोर्ड वगैरह देख रहे हैं पाइप है एल्बो है।

एक ही बहोत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा हैं कैंपस हैं कॉलेज या स्कूल जिसका भी होगा कैंपस दिख रहा--

एक रास्ता है पुराना सा घर दिख रहा है वाइट कलर का पेंट लगा हुआ है उस पे ब्लैक कलर का गेट है।

ये एरोप्लेन है एरोप्लेन अपने --

दो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं घास दिख रही है पानी है पानी के साइड में कंपाउंड है।

एक ज्वेलरी शॉप है इस ज्वेलरी अ शॉप का नाम है राधा ज्वेलर्स और यहाँ पे --

इस शॉप में छोटे छोटे कबर्ड लगे हुए हैं।

खुली जगह दिख रही है खेती है यहाँ पे घास है।

रूम में सामने के साइड पे एक लड़की बैठी हुई है।

योगा हो रहा है यहाँ पे इसके अलावा बाकी सब उसके अपोजिट बैठे हुए हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ा हुआ है।

न्यूली ओपनिंग हुआ है बलूनों से सजा हुआ है फूलों की माला है।

दो चेयर हैं एक अंदर के साइड पे है एक बाहर के साइड पे है बाजू में दरवाजा है लोखंड का।